यहां पर अलग अलग प्रकार की मछलियां है।

इस पर प्रशासनिक भवन लिखा हुआ है।

काले रंग की बुलेट खड़ी हुई है।